सामने में बास्केट भी दिखाई दे रहे है फ्लोर पर टाइल्स भी लगाया हुआ हैं।

सारे कंप्यूटर्स जो ब्लू कलर का है कंप्यूटर्स रखने वाला टेबल जो सब ब्लू कलर का है।

बच्चों के नीचे वाले फ्लोर पर रेड और ग्रीन कारपेट बिछाया हुआ है।

कुर्सी के रंग काला और सफेद है।

में मुझे तीन लोग दिखाई दे रहा है।

में सेल्फ डिपॉजिट लॉकर्स अवेलेबल लिखा हुआ दिख रहा है।

तस्वीर एक दुकान के बाहर से लिया हुआ है।

दुकान में एम_एस गोमिन एंटरप्राइज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस कमरे के फ्लोर पर मैट भी बिछाया हुआ है।

ट्रक के बगल में बहुत सारे घास दिखाई दे रहा है।

सामने वाले बिल्डिंग को लाइट पिंक से पेंट किया गया है आसमान भी दिख रहे--

जमीन पर बहुत सारा पानी गिला हुआ दिखाई दे रहा है।

इस कार वॉश का छत जो टीना से बना है।

एक कार जो है ऑरेंज कलर का हैं एक कार जो हैं डार्क ब्ल्यू का है।

सारे लड़कों ने जूता पहन रखा है।

इस तस्वीर में मुझे बड़ा सा एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है।

आगे मे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

आदमी ने ब्लू शर्ट पहन रखा है।

में बहुत सारा लोग दिखाई दे रहा है चलते हुए।

बगल में हार्मोती जंकशन लिखा हुआ दिखाई दे रहे है यहां पेढ़ पोढ़े दिख रहे --

सामने में रेलिंग भी दिखाई दे रहा है।

रेलिंग का अंदर मुझे काला रंग का एक कार दिखाई दे रहा है।

गाड़ी के बगल में और एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में मुझे बहुत बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग जो है सफेद रंग का है बिल्डिंग के ऊपर में सेलिंग रेलिंग में मुझे एक औरत दिखाई दे रहा है सामने में मुझे एक--

जानवर का आधा हिस्सा भी दिखाई दे रहा है जहां आसमान भी दिखाई दे रहा।

यहां मुझे तीन कुर्सी दिखाई दे रहे है सारे काला रंग का।

सामने में मुझे बहुत सारा पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

राइट में मुझे फेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है फेस लिखा हुआ सामने में एक--

इस हॉल के फ्लोर पर सफेद रंग का टाइल्स लगाया गया है।

सारे घर टीना से बना हुआ है।

यह तस्वीर एक दुकान के अन्दर से लिया हुआ है।

मुझे यहां आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स भी दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे एक खुला सड़क दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां लाइट्स भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में एक रैक भी दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे बड़ा सा एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

टेबल का ऊपर मुझे एक सफेद प्लेट दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे एक चटनी के बाउल भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग पर बहोत सारा बरा बरा पोस्टर्स चिपकाया गया है।

तस्वीर मे मुझे एक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

ऊपर में ऐ_सी या ए_टी_एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस कॉरिडोर की दीवारों पर सफेद रंग लगाया हुआ--

यहां स्टेज पर ग्रीन कलर का कारपेट बिछाया गया है।

में मुझे तीन लोग दिखाई दे रहा है।

इन लोगों ने सितार और तबला पकड़--